और दरवाजा बंद है और उस पिंजरे के अंदर अ मंकी ए खड़ा दिखाई दे रहा है धन्यवाद।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

और बगीचे की तरह अ दिखाई दे रहा है और गार्डन मैं कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे है और जमीन पर हैरियलि हैं और बाजु मैं रोड हैं धन्यवा।

और यहाँ रंगीन पंछी हैं यह पीला लाल और काले कलर हे धन्यवाद।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

चित्र मैं एक हॉल दिखाई दे रहा हैं हॉल के अंदर काफी बीएड वगेरा दिखाई दे रहा हैं।

मैं अ झाली दिखाई दे रही हैं और झाली से पूरा पैक किया हुआ हैं और हरे-हरे ग्रास दिखाई दे रही हैं कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

और इस हरे रही जगह पर एक लायन बेहटा दिखाई दे रहा हैं धन्यवा--

सफ़ेद आसमान दिखाई दे रहा हैं कुछ हरे अ-अ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बाजु मैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और पिंक कलर के हैं दो ऐसे दो बिल्डिंग हैं।

और जा-जान जाली लगी दिखाई दे रही हैं पिले कलर की दीवाल हैं कुछ बच्चो के खिलोने दिखाई दे रहे हैं।

मैं यह दीवाल दिखाई दे रही हैं दीवाल दिख के ऊपर एक बोर्ड दिखाई दे रहा हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पिलर दिखाई दे रहे हैं और पिअर के बाजु मैं गेट दिखाई दे रहा हैं और गेट बांध हैं।

चित्र मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जो पोपटी कलर की हैं अ ड पेड़ नई डांडिया निचे लटकी हुई हैं नजर हां रही हैं।

और छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। और ग्राउंड के ऊपर लोहे की मशीन जैसी दिखाई दे ही हैं। जिस पर बच्चे लोग बैठकर झूलते हैं। धन्यवाद।